इस बिल्डिंग में वाइट कलर पोता हुआ है यहाँ पर लोहे की रॉड लगी हुई है और जो वर्कर है ऑरेंज कलर की यूनिफार्म पहने हुए है।

तीन लोग भी खड़े हुए है जिन्होंने वाइट शर्ट पहना हुआ है और यहाँ ग्रीन कलर का अहः कलर भी दिखाई दे रहा हैं।

ये एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग है यहाँ पर एक ऑटो खड़ी हुई है और एक येल्लो कलर की वैन है।

ऐ इसमे पिंक कलर का कलर्ड हुआ है और ये छोटी मूर्ति है।

ये एक टापू बना हुआ है ये इवनिंग वयू है यहा दोनो तरफ पेड़ लगे हुए है और एकबोर्ड लगा हुआ हैँ खुला आसमान दिख रहा हैँ।

फ्रूट मार्केट है यहाँ पर फ्रूट मार्केट हैं और यहाँ पू बहोत सारे फ्रूट रखे हुये है लोग खरीद ने के लिए आ रहे है यहाँ पर दुकान पे एक आदमि बैठा हुआ है उसने माक्स लगाया हुआ हैं।

बुक की दुकान है और यहां पे बुक मिलती है और यहां पर बहुत सारे लोग आए हैं बुक पर्चेस करने के लिए लेडिश भी है जेंट्स भी है।

ये एक बिल्डिंग हैं और यहाँ पर ये मैन रोड पर है यहाँ आजुबाजु ब्लॉक बने हुए है ग्यालरी लगी हुई है बिल्डिंग वाइट कलर की है।

ये सब्जी मार्केट हैं यहाँ बहुत सारी सब्जियां दिखाई दे रही हैं कटर हैं मटर की पल्ली हैं टमाटर हैं गाजर हैं भाजी हैं भट्टे यहाँ पर एक बाईक खड़ी हुई हैं कुछ लोग भी खड़े हुए हैं ।

लोग है यहाँ पे आने जानेवाले खरीदने वाले और बहुत भीड़ लगी हुई--

सब तरफ सुकून दिख रहा है शांति बनी हुई है जंगल मे।

और इस स्कूल की बिल्डिंग हैजो क्रीम कलर से पुती हुई है और आसमान दिखाई दे रहा है और लड़किया बैठी हुई हैयोग कर रही है।